यह एक मैदान है यह मैदान बहुत ही बड़े हैं इस मैदान मे काफी हरे-भरे पेड़-पौधे भी दिखाई देते है ।